यहां पर खेती का मार्ग दिखाई दे रहे उसके पास में एक रास्ते में--

के पास में बड़ा बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है और उसका --